यहाँ एक राउंड शेप में चबुतरा दिखाई दे रहा है चबूतरे के चारो तरफ जमीन दिखाई दे रही है जिसपे घास दिखाई दे रही है। चबुतरे पे एक आदमी दिखाई दे रहा है।

खिड़की दरवाजे दिखाई दे रहे हैं घर में जो कि चॉकलेटी कलर के है नीचे लाल कलर से पोता गया है सीढ़ियां दिखाई दे रही है कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं घास भी दिखाई दे रही है।